मेहनत से योगा से कोई योगा करे से शरीर स्वस्थ रोए ए --

इ एगो चर्च लागे हेय।

बहुत ज्यादे इ लोग नदी में बहुत प्रकारा के मछली रहे।

और इ बोन बहुत बड़ा है ।

यहाँ का बढ़िया रोए --

बहुत बड़ा-बड़ा खेत है खेत सब एकदम --

एगो पुस्तक भंडार लगे यहाँ ।

कॉपी मिलो हेय हर कंपनी के किताब कॉपी मिलों हेय।

गाँव में पढ़ाई पूरे सब बच्चा के बहुत मेहनत --

काटल जाएले सेलून में बहुत आदमी --

और ये जंगल बहुत घना है बहुत हरा-भरा है।

और ये मंदिर हिन्दू धर्म के --